बहुत ही हरा-भरा लग रहा है इस पेड़-पौधे से तालाब भी देखने मे काफी सुन्दर लग रहा है।

यह एक प्राथमिक विद्यालय स्कूल है।

इस घर का जो इस घर में जो पेंट किया हुआ है --

बोहोत सारे समान हैं से दुकान के दुकानदार भी बोहोत अच्छे हैं बोहोत अच्छे से दाम दुकानदारी करतें हैं बोहोत अच्छे से वहाँ प्रचार भी करते हैं उससे दुकान मे हम लोगो को आने मे बोहोत ही अच्छा लगता है।

मंदिर काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। मंदिर का कलर भी बहुत अच्छा --

इस बाला जी मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है जो हर हर लोग बाला जी को जानते हैं बाला जी बहोत अच्छे हैं।

पुलिस हमलोग कोहमलोगो के लिए बोहोत जरूरी है जब कहीं लड़ाई झगड़ा लगता है तो पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच जाता है या पहुँच जाता है।

पर कपड़ा आयरन कर देते हैं तो कपड़ा देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। कपड़ा पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है।

यहाँ पे चिड़ियाघर देखने में बोहोत ही अच्छा लग रहा है। इस पेड़ पे इक पत्तियां रखखा हुआ है। इस पेड़ के ऊपर इक पेड़ भी रखखा हुआ है।

और सब बच्चे यूनिफॉर्म में हैं और यहाँ पे एक मैडम भी है।

यहाँ सब कोई पूजा करने के लिए आते हैं।

लग रहा है जैसे इस भवन में कुछ हो रहा है अभी।

ये एक्सरसाइज करने का जगह है यहाँ सब एक्सरसाइज जिम करने के लिए आते हैं।